इनका मूर्ति एक प्रेम का प्रतीक है और बहुत ही सुंदर मूर्ति है बहुत ही अच्छा लग रहा है।

ये तस्वीर देख सकते है ये इस सोनपुर मेला का है हरियल छेत्र का ये सोनपुर पुरे में बहुत बड़ा मेला है और दशहरे में ल इसे कहा जाता हैं पशु का बहुत बड़ा मेला लग इस में लग--

ये मौसम बहुत अच्छा लगता है बहुत कोई इसमें तस्वीर इस मौसम में दिखाने में बहुत ही मजेदार तस्वीर आती है ।

क्योंकि यहाँ पे चौबीस घंटा सेवा उपलब्ध रहता है ए.टी.एम. में ए.टी.एम. से जितना चाहे उतना तात्काली पैसा निकाल सकते हैं ए.टी.एम. ये स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है।

दुकान है इस दुकान में बहुत प्रकार की मिठाईयाँ है मिठाईयाँ खाने बहुत पसंद लगता है बहुत लोगो को --